ग्लास का कटिंग अलग-अलग दिखाई दे रहा है नीचे में रखा हुआ है लग रहा है बिल्डिंग बनाया हुआ है ग्लास का देखने में बहुत अच्छा है।